बाइक खड़ी है। एक लोग खड़े है। बगल में ईंटे की --

यहाँ पर एक बाउंड्री घेर --

प्लस बैट्रा रखा हुया है। इन्वाटर है। टिफिन है।

पेट्रोल डीज़ल भराने के लिए --

सिएट का बैनर लगाया हुआ है बगल में बिल्डिंग हैं।

छोटी-छोटी आलमारियां लकड़ी की बना के रखी हुई हैं।

फ्रूट मे रखे हुए हैं। केले हैं।

के अंदर छोटी सी अच्छी सी मूर्त --

है जामुन है।